यहां पे दो व्यक्ति छत को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

बहोत लोगों ने लाल रंग का ब्लेजर पहना है और कुछ लड़कियों ने लाल कोटी।

यहां पे दीवारों का रंग सफेद है।

सामने में लाल एवं पीले रंग के टमाटर दिखाई दे रहे हैं।

इसपे सफेद रंग की बोरियां रखी हुई है।

बार का नाम और अरुम है।

यहां पे एक पीला गिटार एक डार्क ब्लू गिटार और एक कला और सफेद पियानो रखा हुआ नजर आ रहा है।

एक आदमी उन्हें देख रहा है।

मूर्ति बना हुआ है जिसका रंग सफेद है।

यहां से बहुत सारे दुकान दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

शोरूम के नीचे एक हरे रंग की गेट भी--

यह एक बिल्डिंग के सामने का तस्वीर है।

मिट्टी दिखाई दे रही है।

सामने कुछ कुर्सियां लगी हुई--

आसपास कुछ लोग भी खड़े हैं।

पंखे भी लगे हुए हैं।

छोटी पौधों का रंग लाल है और बड़े पौधों कुछ हरे रंग के हैं।